जो कई रंगों में गुलाबी रंग हरे रंग नीले रंगों में इन्हें पेंटिंग किया गया है।

और उस कूलर के उपर एक लकड़ी है।

यहाँ पर एक खेत है। खेत में मिर्च की --

यह एक चर्च मंदिर है और उस --

और वहाँ पर दो पंखे है। जिसका रंग सफ़ेद है और एक आ --

उस द्वार गेट पे एक आदमी कुर्सी लगाके बैठा हुआ है।

और पत्तियों का कलर हरे रंग का है।

रोड पे के बगल में पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पर बोहत सारे कसरत करने की म --

सफ़ेद रंग की दीवार है। मूर्ति के सामने मेज रखा हुआ है।

यहाँ पर तीन लड़के खड़े हुए हैं शीशे के सामने।